ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है पीछे की साइड में अलमारी लगी हुई है उसमे कुछ किताबे रखी हुई है |

प्लेट के अंदर लाल और हरे कलर की लाइनिंग दिख रही है प्लेट की।

नीचे रोड पर दो लड़के बाइक कर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं | पास में बड़ी सी कार नज़र आ रही है एक ब्लैक कलर की |

इधर अ कार खड़ी हुई है पीछे के साइड में बस खड़ी है।

उसके पास एक जेंट्स खड़ा हुआ है।

पीछे की साइड बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जा रही है स्कूल हो सकता है।

बहुत सारी मशीनें लगी हुई है येलो कलर की।

ऊपर कांच का गैलरी बनी हुई है गैलरी के पास में एक लड़का नजर आ रहा है।

बड़ी सी पर्ची पकड़े हुए दो जेन्ट्स दिखाई दे रहे है।

पिंक व्हाइट ब्लू --

एक लड़के ने चश्मा लगाया हुआ है पीछे बैकग्राउंड में --

कलर करा हुआ है दो स्पीकर लगे हुए नजर आ रहे है।

तार के उस पार में बला पिंक कलर की ब्लॉक लगी हुई दिख रही है।

माइक और बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ है ब्लैक कलर का।

रोड दिखाई दे रहा है ई-रिक्शा दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।